और सनसेट हो रहा है बहोत ही ग्रीनरी है शाम का समय है।

और लाल डेस्क और ब्लैक चेयर पर बैठा हुआ है वो।

और इस पिक्चर में मुझे एक व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

में मुझे एक कपल नजर आ रहा है।

मूर्ति के नीचे मुझे एक लाइट दिख रहा है।

एक आदमी तो शायद दूल्हा है जिसने गोल्डन कलर का शेरवानी पहना हुआ है।

इस पिक्चर में हमको तीन फ्लोर दिख रहा है।

दूकान के ऊपर तिरुपल लगाया हुआ है।

आसपास बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे सपोर्ट दिख रहा है और बहोत सारा पेड़ दिख रहा है।

वॉल दिख रहा है और एक इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा--

चेयर्स हैं टेबल्स हैं चेयर जनरली और रेड और ग्रीन कलर का है।